पेड़ सारे ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे है कही ग्रीन भी दिखाई दे रहे है और फूल भी येलो पिंक नज़र आ रहे है ग्रे कलर के पत्थर से दिखाई दे रहे है।

यहां पर एक मैदान नजर आ रहा है जहाँ पर कई सारे व्यक्ति भी नजर आ रहे और कई सारे घर भी दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

और क अधिक पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं जिन का कलर ग्रे ना दिखाई --

यहां पर एक सड़क नजर आ रही है जिस पर कई सारे व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर --